में बहुत सारी खिड़कियां दिखाई दे रही है जिसमें कांच लगा हुआ है और एक पंखा दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर का है।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

और एक पंखा दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है और कुछ छतरी दिखाई दे रहे है जो वाइट कलर के है।

ब्लैक कलर की है और कुछ फूल दिखाई दे रहे हैं जो ग्रे कलर के हैं।

यहां पर मुझे कुछ दुकानें दिखाई दे रही है जिसमें बहुत सारे सामान रखे हुए दिखाई दे रही है।